उसी का ये मेन गेट है | लोग यहाँ पे आते-जाते रहते है | यहाँ पर दिन में --

घूमने फिरने जैसा एरिया बना हुआ है | जहाँ पे कि लोग घूमने पिकनिक मनाने --

यानी फास्टफूड में जो कुछ भी खाने का सामान होता है वो सभी लोग यहाँ पे खाने --

सड़क के किनारे का ये है देखिये इधर सड़क है और कुछ मार्केट जैसा है और कुछ दुकान भी है |

यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ जो है यहाँ पे नहीं रुकती है।

और इस तरह का बिल्डिंग जो है अभी के समय में --